बना हुआ है बना हुआ है इसके बीचो बीच एक खंबा लगा हुआ है जिसमे जैसी पत्तियाँ काले कलर की दिखाई दे रही है।

इस इमेज में पानी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसके पत्थर की पत्थर के पहाड़ों पर हरी हरी बड़ी-बड़ी घास जैसे दिखाई दे रही है।

इस इमेज में रेसिंग रेसिंग वाली नाव चला दो व्यक्तियाँ दिखाईं दे रहे है जोकि बहुत सारा पानी है दिखाईं दे रहा है।

इस इमेज में एक बाजार की रोड का नजारा दिखाई दे रहा है जिसमे एक व्यक्ति बा- कचरे की गाड़ी के पीछे एक बाइक जा रही है जो बाइक वाला व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए है।

इमेज में एक सफेद कलर सफेद कलर की एक बिल्डिंग नई सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने कचड़े की गाड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक पत्थर जेसी चौकोर बनी हुई है।

इस इमेज में ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग जैसी दिखाई दे रही है जिसमें काले कलर की फोर व्हीलर रखी हुई है जिसके तीन पिलर दिखाई दे रहे हैं।